यहाँ पे लकड़ी के टेबल के साथ हरे रंग की कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं इन लकड़ी की टेबल में एक कांच का ग्लास रखा है जिसमें मिल्क शेक भरा हुआ है।